यहां पर बहुत सारे काउंटर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं यहां पर स्कूटियां भी खड़ी हुई दिखाई दे रही।

यहां पर बहुत सारे पिलर भी दिखाई दे रहे हैं यहां पर बहुत सारे पेड़ भी दिखाई--

यहां पर एक बस भी पानी में खड़ी हुई दिखाई--